ये एक धार्मिक ऐस्थल का फोटो है।

सामने ग्रीन कलर की एक छोटी वॉल है।

जमीन पर ग्रीन कलर का कार्पेट बिछा हुआ हैं।

पीछे सेलून का एंट्रेंस बना हुआ है जो कि बलून से सजाया गया है बलून का रंग व्हाइट और ब्लू कलर का है ।

यहाँ पर एक फ्लोर बनता हुआ नजर आ रहा है जहां पर कुछ मजदुर खड़े है और उसको बना रहे है।

और बच्चे वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं।

और दूसरी साइड मे कुछ इ-रिक्शे खड़े नजर आ रहे है ।

बीच में एक रेड कलर फ्लैग भी लगा है जो की दिखाई दे रहा है जमीन पर ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है ।

साइड में और लोहे के पिलर्स दिखाई दे रहे हैं दूर पर कुछ पेड़-पौधे नज़र आ रहे हैं।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

पीछे वॉल है वॉल पे आईडिया का लोगो लगा हुआ है।